इसमें काफी अच्छी सजावट है।

एक पेड़ भी लगा हुआ उस पेड़ की टहनियां भी दिखाई दे रही है।

और बगल में एक छोटा सा मेज भी पड़ा हुआ है।

काफी पुराना ए_टी_एम लग रहा है।

सामने एक मकान बना हुआ है पेड़ भी लगे हुए हैं।

आ यहां पे कुछ दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और दो कारे भी खड़ी हुई है।

सब लाइब्रेरी में एक एक स्लिप टंगी हुई है।

ये किसी अं मैदान की फोटो है।

ये किसी रेस्टोरेंट की फोटो --